और उसके पीछे साइड भी एक घर बना हुआ है।

ट्रेक्टर खड़ा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और उसके आगे पोख बड़ी झील है।